यह एक दुकान है दुकान पर कई व्यक्ति हैं यहां बहोत--

बच्चे खेल रहे है।

बच्चों ने सफेद कपड़े पहने हैं यहां हरे घने पेड़ हैं।

कुछ लोग बाहर खड़े हैं।

यहां नए सोफा भी--

बैड पर गद्दा हैं।

गुब्बारे लाल पीले हरे नीले गुलाबी रंग के--

यहां बच्चे बूढ़े आदमी औरत सब--